डायनिंग एरिया में कुर्सी व मेज भी पड़ी दिखाई गई है।

इमारत पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

फंक्शन में लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है।

इस फोटो में किसी नदी का दृश्य दिखाया गया है।

नदी में जल कुंभी जैसी घास भी दिखाई दे रही है।

मूर्ति के ऊपर गोल्डन व ऑरेंज रंग से थोड़ा थोड़ा पेंट किया गया है।

हॉल को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है।

इमारत के बाहर एक बैनर लगा हुआ है।

कुछ टोकरी में फल रखे हुए हैं।

कैमरे के ऊपर एक लाइट भी लगी दिख रही है।

इस फोटो में किसी रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाया गया है।

इस फोटो में किसी दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

सामने की दीवार पर एक घड़ी व पंखा भी लगा हुआ है।

सड़क के दोनों तरफ तोप का ढांचा रखा हुआ है।

सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं।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

यह मेट्रो स्टेशन का प्लेटफार्म है।

स्टेज को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है।

सामने की तरफ कुछ हिरन भी दिखाई दे रहे हैं।

डाइनिंग टेबल पर सफेद और लाल रंग के कपड़ा पड़ा हु--

काउंटर के ऊपर अलग अलग तरह की खाने की चीजें रखी हुई हैं।

नीचे की तरफ कटे हुए ड्रम दिख रहे हैं।

सामने की तरफ कुछ हिरण दिखाई दे रहे हैं।

रिसेप्शन काउंटर के पीछे रसोई घर भी है।

इस फोटो में किसी शापिंग मॉल का दृश्य दिखाया गया है।

ए_टी_एम के बाहर कुछ बाइक भी खड़ी हैं।